इस मेज में हमें यहां पर एक फैमिली दिखाई गई है फैमिली के अम्म मेंबर में यहां पर कुछ लेडीज़ दिखाई गई है जिन्होंने साड़ी पहन के रखी हुई है।

इस इमेज में हमें एक स्कूल का प्रोग्राम दिखाया जा रहा है मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है जिसमें स्कूल का नाम लिखा हुआ है।

इस इमेज में हम एक तालाब दिखाया गया है तालाब में आप एक नाव रखी हुई है नाव के पास कुछ लोग खड़े हुए है।

और पीछे हमें कुछ पेड़ भी दिखाए गए हैंआसमान दिखाया गया है लड़का है जिसने व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है और ब्लैक कलर का पॅन्ट पहन के रखा हुआ है।

इस इमेज में हमें एक लड़का दिखाया गया है। लड़की ने यहां पे उम-म टि - शर्ट पहन के रखी हुई है जो पिंक कलर की है।